इस इमेज में सामने ही रोड दिख रहा है उसके साइड में होटल संगीत का बैनर लगा हुआ है फिर उसके बाद वाली इमारत पे --

होटल मैन्युफैक्चरर बाय ऍम_ स विशाली।

ऊपर जाली लगी हुई है। उसके ऊपर सीमेंट का पूरा वर्क किया हुआ ये किसी छठ का इमेज या बनाई जा रही है।

जहां पे कुछ लोग खड़े हैं सामने एक लड़का।

ये किसी पथरीली जगह का ऊंचाई का दृश्य है जहां पर नीचे--

और उसके दूसरी तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं एक आदमी टेक लगा के खड़ा हुआ है और नीचे चेयर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

कुछ सा चीजें साफ दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रही हैं।

और बाहर भी बड़े बड़े पोस्टर हैं और अंदर कुछ लोग हैं दो लोग कुर्सी पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

पेड़ों पेड़ ज्यादा दिख रहे हैं और दूर छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं और दूर से भी--

आर के एम वी शिमला लिखा हुआ है और वाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग हैऔर जिसके नीचे बहुत सारे पेड़-पौधे हैंऔर एक छोटा सा।

इस इमेज में दीवार पर बहुत खूबसूरत पर्दा लगा हुआ है।

इस इमेज में सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

इसके ऊपर की जगह पर लैंड मार्क लगा हुआ है और उसके निचे--

सीलिंग पे लाइट लगी हुई हैजो जल रही है।

दिख रहे है बड़ी बड़ी विंडो है सामने और साइड से भी और उसके ऊपर ऊपर डिजाइन बनी हुई है।

रख के खड़ा हुआ है और ऊपर सीलिंग पे डिजाइन बनी हुई है।

इस इमेज में एक सामने ही पुतला दिख रहा हैऔर उसके ऊपर इमर्ज ।

इस इमेज में रेक में कुछ तरफ कपड़े तय करके रखे हुए हैंऔर कुछ टी टी_शर्ट हैं।

माउंट लिखा हुआ है नीचे फोर व्हीलर दो खड़ी हुई हैं।

अ ब्लू कलर का पतरे से बनी हुई इमारत है और सामने से ये पेड़ की झाड़ें दिख रही है।

इस इमेज में सामने ही एक लेडी आ रही है जिन्होंने साड़ी पहन रखी और हाथ में रेड कलर का--

और दूसरी तरफ दुकान है जिसमें थैले में सामान रखे हुए हैं।

और नीचे ही दो आदमी है जो रोड पे जा रहे हैं उनके पीछे ही एक फोर व्हीलर है और आगे टू व्हीलर खड़ी हुई है।

इस इमेज में सामने टू व्हीलर खड़ी हुई हैं एक पर्पल एंड ब्लैक कलर में और एक ब्लू एंड --